यह एक पट्रोल पंप का दृश्य है। पट्रोल पंप में हम अपनी गाड़ियों में फिलिंग करवाते हैं। यहाँ पर डीजल पट्रोल गैस से चलने वाले गाड़ियों में फिलिंग की जाती है।

यह एक चर्च का दृश्य है। चर्च ईसाई लोगों का पवित्र स्थान होता है तथा यहाँ पर क्रूस पर टंगे जीजस की मूर्ति भी होती है जो कि उनके प अ प प्रमुख देवता माने जाते है।